फिरोजी कलर के सामने कुछ मकान बने हुए दिख रहे हैं। यहाँ पर कुछ गाड़ियां खड़ी दिख रही है जो काले रंग की हैं। आसपास एक्टिवाये खड़ी हुई दिख रही हैं सामने कुछ बाइक हैं जो सफेद रंग का कुछ बैठा हुआ है।

ये हॉल लग रहा जिसमें स्टेज बना है जोकि एक सोफा रखा है जो सफेद और गोल्डन कलर का है यहाँ पे कुछ लाइटे लगी हुई देख रही पीछे काफी सारे फूल लगे हुए --

यहाँ पे काफी सारी खिड़कियां दिख रही है दरवाजा दिख रहा जो कथई कलर का है ऊपर आसमान दिख रहा है जोकि सफ़ेद रंग का है आसपास काफी सारा बड़ा सारा महल बना हुआ दिख रहा है।

कुछ पेड़ घास लगी हुई दिख रही है ऊपर की तरफ आसमान दिख रहा है जो कि सफ़ेद रंग का यहाँ पर काफी सारे पेड़ घास लगे हुए दिख रहे हैं कुछ मिट्टियाँ पड़ी हुई दिख रही हैं ।

और ऊपर आसमान है जो कि सफ़ेद रंग का है। नीचे काफी सारा दिख रहा है।

एक बड़ा सा बैंक दिख रहा है यहां पर दीवार है एक मंजिला दिख रही है यहां पर दीवार दिखाई जो की क्रीम कलर की आसपास कुछ दुकाने दिख रही है कुछ शटर लगे हुए दिख रहे है सामने एक बड़ी सारी दुकान दिख रही है जिनमे एक बैंक लगा हुआ है।

यहाँ पर बड़ा सारा दरवाज़ा दिख रहा है जो सफ़ेद रंग का है। कुछ कत्थई कलर की जालियां लगी हुई हैं। सामने एक बड़ा सारा हॉल दिख रहा है जो कत्थई कलर का है उसपर काफी सारी कुर्सियाँ रखी कुछ बोर्ड लगा हुआ दिख रहा है।

इस दरवाज़े पे एक ताला लगा हुआ है जो सिल्वर कलर का है जो सफ़ेद कलर का दिख रहा है ऊपर कुछ खिड़कियाँ दिख रही है ऊपर क सामने काफी बड़े सारे मकान दिख रहे है जो सफ़ेद कलर का है आस पास काफी सारे खिड़कियाँ दिख रही।

पीछे काफी बड़े- बड़े पेड़ लगे हैं इसमें हरे कलर के पत्ते हैं । ऊपर आसमान दिख रहा है जो कि सफ़ेद रंग का दिख रहा है नीचे काफी सारा ब्रो मट्टी पड़ी हुई दिख रही है कुछ ईटे रखी हुई दिख रही हैं यहां पे काफी सारा शटर लगा हुआ दिख--

मार्केट है | यहां पर काफी सारे ठेले लगे हुए हैं कुछ संतरे और सेव रखे हुए दिख रहे हैं कुछ केले रखे हुए दिख रहे हैं सामने बड़ी सी एक दलिया है जो कत्थई कलर की है सामने कुछ नारियल पानी रखे हुए दिख रहे हैं कुछ दलिया रखी हुई है जो की लाल कलर की है पीछे एक आदमी बैठा है जो की --

वह मैदान है जिसमें काफी सारी घासे लगी हुई है कुछ पेड़ लगे है जिसमें हरे कलर के पत्ते हैं ऊपर आसमान दिख रहा है जॉ की सफेद रंग का सामने कुछ पेड़ लगे हैं जिसमें हरे कलर के पत्ते हैं आस पास काफी सारे मैदान महल टाइप का दिख रहा है जो कत्थई कलर का है।